कुछ औरतें हैं कूछआदमि है जो की खड़े हैं। मुंह में मास्क लगाए हुए हैं। नीचे एक नदी है।

एक ग्राउंड है जिसमें एक सामने गेट लगा हुआ है गेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है जिसमें प्रणाम लिखा हुआ है साउथ पे कुछ झूले लगे है।

छात्र कुछ मकान है जिसमें सफेद रंग की पेंट हुई है।

मैदान है जिसकी चारो तरफ कुछ पानी की दिवाली बनी हुई है ऊपर झालर लगी हुई है। जो की गुलाबी कलर की जल रही है चारो तरफ कुछ मिट्टी की मूर्तिया लगी हुई है।

क्योंकि कागज में रखी है। कागज से कुछ बना रही है कुछ लड़के भी है जो की बैठे हैं पंक्ति में। उपर लोहे की जालियां लगी है जो कि खिड़कियां है। बाहर से रोशनी आ रही क्योंकि अंदर की ऑर।

हॉल है जिस बहुत सारी बेंच रखी हुई जिन पर कुछ लड़के कुछ लड़कियां बैठी है एक टीचर जो की साड़ी पहनी हुई --

कुछ खिड़कियां लगी है जो की लोहै से बनी है जिसके पेट बाहर का प्रकाश अंदर की और आ रहा है बाहार कुछ पेड़ पौधे दिख रहे है जो की हरे भरे है।